कुर्सियां टेबल रखी हुई है और ये चाय पानी करके लिखा हुआ है ऊपर में दुकान के ऊपर यहां पर कोई नहीं--

यहां पर ये कार है और वो--

वहां पर एक आदमी खड़ा है और बइया भी खड़ी है लड़के बच्चे भी खड़े हैं और यहां टूकना में उसने टोकरी में आ--

बड़ी नदी है और नदी के किनारे में ये घास वास है और इधर साइड में पेड़ पौधे काफी सारा जंगल है।